और यहां पर भीड़ नहीं है लोगों का । और लेकिन इसेपे बहुत खूबसूरत दिखने की वजह से यह बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका नजारा बहुत अच्छा और टाइल्स भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है फोन से बात कर रहे हैं और जो लाइट मर्करी का लाइट वो बहुत खूबसूरत दृश्य दे रहा है। और इसका जो स्नेकर बार है उसका ब्लू कलर इसका टॉप है।

यह एक फुटबाल प्लेग्राउंड है यहाँ पर बहुत सारे लोग है एंड प्लेग्राउंड में फुटबाल खेले आए हुए हैं।

यह एक पुराने स्कूल का दृश्य है जो अभी बंद है आ उसके सामने एक ग्रीन पेड़ भी दिख रहा है कुछ हरा-भरा भी है और कुछ सूखा है। यह --

और इसमें बहोत सारे पेड़-पौधे हैं और पेड़-पौधे होने का ना सुबह में बहोत आनंद आता है।

और इसके सामने का जो दरवाजे का फिगर है । वह बहुत खूबसूरत दिया हुआ है । डिजाइन बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके साइड मे जो एक शीशे का बिल्डिंग बना हुआ है । वह बिल्डिंग जो स्कूल का है ।

यहां एक टेंपल है । जो लाल किला की तरह ल- लग दिख रहा है ।लेकिन ये लाल किला नहीं बल्कि एक ग्रीन किला है। जिसमें बहुत सारे जो है फिर दिए हुए हैं।

आने में ईट का फिगर है जो बहुत खन्डर की तरह दिख रहा है यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर होने का थोड़ा खूबसूरती बढ़ गया लेकिन ये

नाईट का टाइम है हैना पीछे पेड़-पोधे भी हैं और ये ग्राउंड बहुत बड़ा है।

खड़े हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब मास्क पहने हुए हैं।

आ इसमें आ इसमें जो पत्ते हैं वो पानी वाले पेड़-पौधे के पत्ते हैं इसमें कुछ-कुछ पानी भी दिख रहा है आ पंछी बहोत खूबसूरत लग रही है।